ओर यह फूलो का दुकान है जिस दुकान मे ये लाल कलर के हर-हर उसमे बाल्टियों मे बोरियो मे एक यह रखे हुए है ।

पेड़ है जो पेड़ के के नीचे कुछ सीढियाँ बनी हुई हैं और छोटी सी मंदिर बनी हुई है और मैदान है जिस मैदान में हरी घास जमी हुई है और कुछ बंदर --।

और नीचे भी कुछ माले फूल भी रखे हुए और गमला रखा हुआ है जिस गमले में ए बहोत सारे फूल गुलदस्ते हैं।

एक बड़ा सा खेत है जिस खेत में गेहूं बोआ हुआ है और गेहूं--

पानी का टैंकर भरा हुआ है बादल नीला सफ़ेद है।

जो सामने टावरें भी बनी हुई हैं दिख रहे हैं और नदी भी हैं अ बादल सफेद नीले हैं।

नदी है जो नदी में पानी बह रहा है और पानी में एक लड़का जो खड़ा हुआ है।

प्लांट्स पॉवर्स है जिसमें गिफ्ट ग्रीन है जिसके अंदर फू पूरे फूलों का माला --